इमेज में दिखाया गया रंग-बिरंगी लाइटें हैं काफी बलब वगैरा रंग-बिरंगे रंग लगे हुए हैं ये मेले की तरह काफी लोग आए हुए हैं यहां पे --

बढ़िया स्टाफ है बढ़िया साफ सुथरी जगह है काफी पेड़ है यहां पे दूर तक लाइटें हो रखी हैं रंग बिरंगी लाइटें ऊंचे लैंप वगैरा सब लगे हुए हैं यहां पे।

और यहां पीछे कुर्सी रखी है शायद के लिए मित्र उसके साथ में खड़ा है काफी अच्छी सजावट है बहुत ही बढ़िया नजारा है।

इस इमेज में हमें एक मंदिर दिखाया गया है जिसमें एक बहुत ही ऊंचा गुंबद है।

गुम्बद के ऊपर झण्डा लगा हुआ है गुंबद के बगल अगल बगल में दो झंडे लगे हुए हैं।

कई तरह के पाइप निकला हुआ है।

जिसे गौरव टॉवर बोलते हैं ये हमारे जयपुर--

इस इमेज में हमें दो अलमारी और तीन पर्दे दिखाए गए हैं।